बोहोत अच्छी चीज है जो लोग जिम करने जाते हैं।

और बाड़ बाल खड़े हो जाते है वैक्स लगा के।

बहुत अच्छा काटते है ये बाल हमें यही से इसी सैलून से बाल कटानी चाहिए मुज्जफल नगर में है द्वारका पूरी में।

देखने में आइसक्रीम लग रही है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। पिंक व वनिला --

और हर तरह का मैंटेरियल मिलता है यहाँ।

जो भी डॉक्टर कमजोरी आ जाती है जैसे हमारे में तो डॉक्टर यही बताता है फल ही खाना --

बहोत फादेमंद होते हैं। फल का जूस बनाया करा कर फल का जूस मिलता है।

शिव जी की पिंडी है। जल चलाना चाहिए हमें रोज इसपे और तो और यहाँ शिव जी का मान सम्मान करना चाहिए। हम शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं।

जो बड़े लोग होते हैं। उनकी सेहत बढ़ जाती है जिम करने से और तो और यहां --

क्योंकि इतना मिठास आता है मिठाई खा के। ये श्रीमंडन सॉस की मिठाई है।

ये घर के सामने ये होटल है शेरटन या ये शिव होटर के बराबर में है। यहाँ कई रोग ठहरने आते हैं रात के लिए।

और यह होटल भी अंदर से बहुत सुन्दर दिखता है और बाहर से भी इसकी आकर्तियाँ बढ़िया है।

यहाँ हर समान मिलता है जैसे आपकी चीनी हो गयी घी हो गया चिप्स हो गया और जैसे आजकल का डिपार्टमेंटल समान हो गया।

और हर समान उचित रेट पे यहां मिला जाता है।

ये मुजफ्फरनगर में वीर बुक स्टोर सेंटर है। गौशाला रोड पे । इसे इसपे हर तरह की बुक्स मिलती है।

गार्डन्स में घूमने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है शरीर ठीक रहता है गार्डन हर जगह होना चाहिए ये बहुत अच्छा --

ये मेकेनिक भाई साहब अभी टी.वी.एस. बाइक को ठीक कर रहे हैं अच्छी तरह से बाइक ठीक करके देते हैं।

हमे जिम करने से हमरा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हाईट भी बढ़ती है।

मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन पहले की तरह से बोहोत ज्यादा अच्छा हो गया है। यहाँ कैंटीनों की सुविधाएं हो चुकी हैं।

और इसमे स्टेयर्स भी है देखो कितनी अच्छी तरह का। यहाँ लिफ्ट भी है।

ये मुजफरनगर का रेलवे स्टेशन का फर्स्ट गेट है यहाँ हर तह की रिक्सा खड़ी रहती है बाइक खड़ी रहती है।